तीन लगाए गए हैं कुछ पेड़-पौधे हैं। देखने में बोहोत सुंदर लग रहे हैं। यहाँ पे एक गेट है और गेट के अंदर कुर्सियां लगी हुई हैं।

फोटो में इंग्लिश गुरुकुल है। श्री राम इंस्टीट्यूट आफ पब्लिक स्पीकिंग लिखा हुआ है---

अब श्री राम राम नरेश का नम्बर है बेरसी बेरानवे चौंसठ तेरानवे अड़तीस और इंग्लिग की क्लास कर सकते हैं। बोहोत ही अच्छी तरह से यहां सब पढ़ाई होती है।

स्टेट बैंक ऑफ़ मैसूर के बाटे बैंक स्टेट बैंक ऑफ़ मैसूर नीचे बहुत बाइक लागल --

यह देखने में बहुत अच्छा घर है और ऐसा घर हमने कभी नहीं अपने देखा था | और एक कुर्सी है एक घड़ी है और एक टी.वी. भी है।

यहाँ से आप अपना पैसा निकाल सकते है वो भी बिलकुल फ्री में आप अपने खाते से विथड्रॉल कर सकते है इंडियन बैंक के माध्यम से।

इसमें चेक के माध्यम से आप डेढ़ लाख रुपये तक का विड्रॉल वन टाइम कर सकते हैं।

इस फोटो में सीमा शुल्क केंद्रीय उत्पाद एवं सेवायें लिखा हुआ है। ऊपर में ऊ नीचे एक घर है। घर के नीचे एक बाईक लगी हुई है और बहुत सारे गाड़ी कार लगे हुए हैं यहां ---

इससे लोगों को बहुत फायदा होता है और यह लाइट बहुत पुराने से घरो में आती-जाती रहती है और कट भी जाती है। कभी रहती भी है।